यहां पर देखने से हमको एक जगह दिख रहा है ये जगह पर बहुत ज्यादा गेस्ट लोग आया हुआ है और सब का फेस ढका हुआ है।

जहां पर हमें बेसिन दिख रहा है टॉयलेट दिख रहा है और फ्लावर पोट सब दिख रहा है और घर में यूज किया हुआ बहोत ज्यादा मटेरियल है सेल के लिए।

फिर उसके पीछे बहोत सारे जंगल भी हमें देखने को मिल रहा है।

ग्रीन कलर से पेंट किया गया वाल को।

वह घर का सामने एक ठू का ब्लैक कलर का कार भी खड़े हुए है फिर हमें एक लड़का का माथा भी हमे दिखाई दे रहा है।

रामन इंटरप्राइजेज आकाश डीप कॉम्प्लेक्स भी दिख रहा हैं हमे और नीचे--

जिसका पीछे में बहुत सारा रेड कलर का सजाया हुआ है वाल को ब्राउन और व्हाइट कलर से।

सेल किए हुए दिख रहा है फिर वहां में हमें क्रुशर्स दिख रहा है ऊपर में एक बड़ा सा पोस्टर लगा के।

और बहुत सारे स्टूडेंट बैठकर है दो रो है और फ्रंट में एक रेड कलर शर्ट पहना हुआ--

यह एक घर है एक रेस्टोरेंट है जहां पर बहोत सारे लोग आए हुए हैं।

वहां पर ऊपर में ब्लू कलर से बनाया हुआ है कलर --

के सामने एक टेबल भी देखने को मिल रहा है जो टेबल प बहोत सारे समान हमे देखने को मिल रहा है।

उसका बाद उस दूसरे साइड पर भी हमे बिल्डिंग दिख रहा है तीन चार बिल्डिंग हैं जहां पर येलो कलर का पेंटिंग बनाया हुआ है उसका बाद में हमे बहुत सारे इंसान भी चलते--

यहां पर हमें देखने से बहुत सारा इंसान लोग ग्राउंड पर बैठे हुए हमें दिख रहा है आधा लोग क्रिकेट खेलते हुए हमें दिखाई दे रहा है।

और लड़की का फेस दागी हुई है और और लड़की का--

यहां पर हमें एक जगह दिख रहा है वहां पर हम लोगों को एक बहोत बड़ा बिल्डिंग भी दिख रहा है।

यहा पर हमको एक डाइनिंग टेबल दिख रहा है वहां में व्हाइट कलर का सोफा बहोत ज्यादा रखा हुआ है।

इसका बहोत सारा सुंदर डिज़ाइन है वाइट कलर से बना हुआ फिर हमें उसका ऊपर ग्रीनीश करके भी दिख रहा है।

और घर का डिजाइन जो लंबा लंबा करके है बहुत ज्यादा किला दिख रहा है।

ये दूसरे साइड पर भी एक बिल्डिंग है पिंक कलर का बहोत सारा पांच छे ताला है।

ये वो लोग का डिजाइन से बना हुआ खिड़की और वॉल हमे देखने को मिल रहा है।

एक दो व्हाइट टी_शर्ट पहन के फिर दूसरा वाला ग्रे शर्ट पहन के है।

साइन दिख रहा है घास का सुन्दर सा फ्लॉवर्स भी निकल के है।

और उसका बाद उसके ऊपर में हमें छोटा सा एक--

वो इंसान एक येलो पैकेट को पकड़ के देख रहा है।

यहां पर दिन में समय का एक स्टेशन दिख रहा है खाली है और रेलवे ट्रैक है।

पर बहुत सारे दरवाजा विंडोज़ हमे देखने को मिल रहा है।

पेड़ बहोत सारा कलर फुल का फ्लैग सजाया हुआ है और फिर--

यहां पर एक जगह दिखाई दे रहा है वहां पे बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन हमे देखने को मिल रहा है फिर उसके ऊपर हमे क्लाउड्स भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर पोल रखा हुआ है वो पोल जो ग्रीन कलर का है।

फिर हमें बहोत सारा फ्रंट में बाइक और स्कूटी हमें देखने को मिल रहा है।